सामने कुछ बिल्डिंगे भी है एवं अगल बगल कुछ पेड़ पौधे भी हैं।

यह एक ऐसी दृश्य है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

बाजार में बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं ।

ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कुछ परदे भी लगे हुए हैं।

यह दृश्य एक पहाड़ का है इस दृश्य में हमें बहुत बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे रहे हैं।

अगल बगल कुर्सी एवं टेबल रखे हुए हैं बहुत सारे।

सामने कुछ गमले लगे हुए हैं जिन पर शो प्लांट लगे हुए हैं।

एक स्कूटी भी लगी हुई है सामने एक दरवाजा खुला हुआ है एवं दो पेड़े भी दिखाई दे रही हैं।

बैलून उड़ते हुए रंग-बिरंगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने प्रणाम का एक बोर्ड लगा हुआ है।

प्रत्येक गमले में अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हुए हैं।

इसने हाथ में सितार लिए हुए हैं बगल के लड़के झंडे पकड़े हुए हैं।

इस दृश्य में हमें थोड़े थोड़े दूर पर बहुत सारी कुर्सियां एवं टेबल के सेट दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक पार्टी की है इस दृश्य में हमे बहोत सारे फाइबर के प्लेट दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक सफेद रंग का एंबुलेंस दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें बहुत ही सुंदर सड़क दिखाई दे रही है जिस पर लाल एवं पीले रंग से रंग गया है।